जहाँ पे एक भइया जो कि कस्टमर है वो बैठे हुए है सीट पे और पीछे से एक बार्बर उनकी हेयर कट कर रहा है अच्छी डिज़ाइनस दे रहा है अच्छे शेप मे उनकी हेयर कट कर रहा है पहले उनको सेट कर रहा है फिर हेयर कट कर रहे है।